और ये एक कैफै की ओपनिंग का फोटो है जहाँ पर कुछ सजवाट की हुई है और रेड ऑरेंज कलर की और व्हाइट कलर की टेबल रखी हुई है और माला लगा हुआ है और बैलून्स ब्लू रेड कलर के बैलून्स लगे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग का फोटो है। जहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है और --

ये एक जेनरल स्टोर का फोटो है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है और ननीचे दूकान है दूकान में कुछ समान रखा हुआ है जो की डेली यूज़ के कुछ समान होते है वो रखे हुए है कच्चा कच्ची दूकान है ये--

ये गार्डन का फोटो है जहाँ पर ए बाहर एक बिल्डिंग बनी हुई है साइड में उसके बाहर एक अ गार्डन है कुछ प अ सेट हुए पौधे लगे हुए हैं और टॉवर लगा हुआ है एक लैंप लगा हुआ है नीचे ग्रास लगी हुई है।

ये किसी की प्रतिमा है जिसपे उनका नाम लिखा हुआ है और चारों साइड पेड़ लगे हुए हैं और उनकी प्रतिमा में एक माला चढ़ा हुआ है।

--और ऑरेंज कलर का पेंट है जिसमे की उनका नाम लिखा हुआ है। शॉप का और एक काउंटर है और अ पीछे उ-ऊपर टीन का सेट लगा हुआ है।

ये एक किसी की प्रतिमा बनी हुई हैं जिसमें की माला लगा हुआ है और इसके ऊपर सीमेंट का एक कवर है जिसमें भी माला च च लगा हुआ है।